यहाँ एक तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में एक जगह दिखाई दे रही है तालाब का पानी काला दिखाई दे रहा है ऊपर सूर्य दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है पत्थर दिखाई दे रहे है।

यहां कोई खेत दिखाइ दे रही है जिसमें में हरी घास दिखाई दे रहे हैं पानी का गूबारा लगा हुए है फूल दिखाई दे रहे हैं ।

सामने तस्वीर लगी हुई दिखाई दे रही है उसमे माला लगी हुई देखी दे रही कुछ लोग बेठे हुए दिखाई दे रहे है।

एक रोड दिखाई दे रही है एक कार दिखाई दे रही है कार का कलर लाल है और ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है।

दो सोफे लगे हुए दिखाई दे रहे है सामने गमले दिखाई दे रहे है इनका कलर रेड दिखाई दे रहा है पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है और फूल लगे हुए दिखाई दे रहे है फुल का कलर लाला सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

यहां एक कार दिखाई दे रहा है उसका बोनट करता दिखाई दे रहा है उसका इंजन दिखाई दे रहा है --